यहाँ पे बत्तख है ईटा है पत्थर है तालाब पानी है एक लड़की बैठ के देख रही है एगो बच्चा भी है दुगो तीनगो चारगो लड़की है बत्तख बहुत ही सुन्दर से बैठा हुआ है ।

यहाँ पे रास्ता दिखा रहा है यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है लगता है गांधीजी मूर्ति बनाया हुआ है रास्ता जुमरास मिठा जुमराज मीठा सब लिखा हुआ है।

यहाँ पर यहाँ पे ड्रेस फैंसी मिलता है जैसे की जीन्स शर्ट कोट पैंट ट्रैकसूट गाउन |

एगो जेंट्स सामान पकड़ा हुआ है एगो लेडीज सामान पकड़ा हुआ है सभी लड़के लोग कुछ को देख रहा है लगता है भाषण दे रहा है चद्दर कोई ओढ़े है कोई स्वेटर पहने है कोई स्कार्फ़ बांधे हुए है और ये पता नहीं ये क्या है समझ में नहीं पीछे से जेंट्स देख रहा है सब लोग ।

यहाँ पर बैलगाड़ी टू एस.एस.सी. बोले तो --

ये पंजाब नैशनल बैंक है | हम भरोसे का प्रत्येक लखीसराय का शाखा है | अगल बगल में वीवो ओप्पो वीवो का --

पुल है यह नदी है पानी बहुत ऊंचाई मे छुआ है पुल के ऊँचा पूल के उत्तर अंत मे छुपा हुआ है घास उस दिख रहा है बादल नीला-नीला दिख रहा है बादल आसमान में बादल छाए --

यहाँ यूनियन बैंक है और इसका --